पर्दा के ऊपर फूल से सजाया गया है और यहां पे जयमाला कुर्सी रखा गया है।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

और जमीन में बहुत सारे सुखा पत्ता भी दिखाई दे रहा है और जमीन में बहुत सारा घास भी दिखाई दे रहा--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

और यहां पे पीछे में रूम है रूम का दीवार सफेद है और रूम में भी गाड़ी रखा गया है।

और यहां पे दीवार में झंडा भी टांगा गया है और बाहर मे गाड़ी भी दिखाई दे रहा और यहां पे नारियल का पौधा भी लगाया गया है।